यहाँ क्रिसमस फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो यहाँ बहुत सारे चिल्ड्रंस है तो कोई सेंटा बना हुआ है तो कोई ड्रेसेस में है यहाँ बहुत सारे बलून लगे हुए हैं।

और इसके साइड में एक बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है बहुत --

यहाँ ये धुप के कारण ये पौधे अ पेड़ सूख चुकें हैं।

यह एक गोल सर्कल बना हुआ है। जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और यह पानी से फव्वारा चल रहा है।

राइट साइड लिखा है अर्पित ज्वेलर्स वाहन बीमा केंद्र और एक साइड लिखा है वाहन बीमा केंद्र अर्पित ज्वेलर्स | सेम नाम दिए गये हैं| यहाँ सोने के आभूषण बनाये --

और यह रेल के ऊपर कुछ ब्रिज टाइप का दिखाई मुझे दे रहा है।

यहाँ मुझे एक रेलवे लाइन दिखाई दे रही है। जिस पे ये कस्टमर के बैठने के लिए एक कैंटीन दिया गया है।

यहाँ का बहुत सुन्दर नजारा है बहुत अच्छा है।

और उसके साइड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो बहोत अच्छे से अच्छे लग रहे हैं और उसकी फोटो क्लिक --